और बीच में आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है पहाड़ बहोत ही नोकीले दिख रहे हैं।

देखिए यहां पर शादी है। कोई वीडियो बना रहा है। मोबाइल दिख रहा है एक आदमी खड़ा है उसके पीछे एक लड़का खड़ा है।

एक औरत है वो दुल्हन को सजा रही है।

देखिए यहाँ पर आजू-बाजू में दुकानें हैं एक दुकान का शटर बंद दिख रहा है।

देखिए ये कश्मीर दिख रही है बहुत सारे बर्फ दिख रहे है।

देखिए सामने एक पिला टेंपो नजर आ रहा है टेंपो के ऊपर लाल--

देखिए यहाँ पर स्टेज पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेबल चेयर वगैरह रखी हुई है नीचे भी है ऊपर भी रखी हुई है तीन फैन दिख रहा है खिड़कियाँ भी दिख रही है।

लोग बहोत सारी लड़कियां बैठी हुई है ये डांस करने जा रही है मंडप लगा हुआ है दो औरते एक साइड में बैठी हुई है।

बीचों बीच एगो पुतला बना दिखाई दे रहा है ये शायद मूर्ति अंदर एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

देखिए यहाँ पर घर बन रहा है दो डरम रखा हुआ है एक आदमी एक औरत खड़े हैं दो आदमी ऊपर है सीढ़ी भी नजर आ रही है।

देखिए दो बुआई सर दो आदमी खड़े हैं इन चारों के गले में फूलों की माला है।

देखिए इस दुकान में बहुत सारे बॉक्स सो दिख रहे हैं।